मुझे इस इमेज में कुछ लोग दिखाई दे रहे है एक बे पम्पलेट दिखाई दे रहा है जिसमें एस_बी_आई बैंक लिखा हुआ है कुछ स्कूटी दिखाई से रही है ब बाइ दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे कार दिखाई दे रही है कार का टायर दिखाई दे रहा हो औ--

डेकोरेशन दिखाई दे रही है बैगस दिखाई दे रहे है तखत दिखाई दे रहा है रेड कलर की कारपेट दिखाई दे रही है।

गुफा में कलर्स दिखाई दे रहे है दिखाई दे रहे हैं पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस इमेज में कुछ लोग दिखाई दे रहे है बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है बिजली के खम्बे दिखाई दे रहे है तार दिखाई दे रहे है।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

बाइक दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे र हे है पाइप दिखाई दे रहे है पत्थर दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहे है पेड़ दिखाई दे रहे है।